कुछ बच्चो ने अपने मुँह पर मास्क बंधा हुआ है तथा एक टीचर इन्हें गाइड कर रहा है दिवारो पर बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए है छत पर फैन व लाइट लगी हुई है।